इज इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है टेबल पर पानी के जग नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है यहां पर एक बोट भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है और एक साधु बाबा भी नजर आ रहे है।

इस इमेज में एक टॉय की दुकान दिखाई दे रही हैं यहां पर नकली पंछी बैठे नजर आ रहें हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है सामने सीढ़ी भी नजर आ रही है।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

इस इमेज में यहां पर केक रखा दिखाई दे रहा है ऊपर चॉकलेट बिस्किट भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है और बड़ी से इमारत भी नजर आ रही है।

इस इमेज में एक बड़ा सा मॉल दिखाई दे रहा है और नीचे कुछ कारे खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर ढेर सारा सामान नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे दो दुकाने भी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है और तीन चार व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है और कुछ लोग खड़े बाइबल पढ़ते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और एक बड़ा सा पुल भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है और एक्सरसाइज करने की मशीनें नजर आ रही है।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने कुछ दुकानें दिखाई दे रही है यहां पर कार और मोटरसाइकल खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर दुकाने दिखाई दे रही है बाहर देखेगा कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है।